लाल और पर्पल हैं सामने दीवार का कलर क्रीम है बोर्ड का कलर काला --

हाथ का कलर व क्रीम है बैनर का कलर लाल है माला का कलर ऑरेंज है।

सामने आसमान का कलर नीला है और दूर जो वायर है उसका कलर काला है खंभे का कलर भू --

और फर्श का कलर भूरा है व्यक्ति का कपड़ा सफेद और पर्पल है उसके कैप का कलर ब्राउन --

उसका कलर सलेटी है दीवार का कलर ग्रीन है कार का खड़ी कलर सफेद है।

एक व्यक्ति खड़ा कपड़ों कलर पर्पल और काला--

व्यक्ति का कपड़ा का कलर पर्पल है और सामने घास है उसका कलर हरा है।

कार का कलर सफेद है बिल्डिंग्स का कलर सफेद है वेन और उसका कलर पर्पल है।

पौधा है उसका कलर हरा है आसमान का कलर सफेद और पर्पल है।

भैंस का कलर ब्राउन है आसमान कलर सफेद है पौधे का कलर हरा --

दीवार का कलर ब्राऊन है रोशनी का कलर पीला है सामने एक व्यक्ति खड़ा कपड़ों का कलर पर्पल है।